यह गार्डन बहोत ही बड़ा है इस गार्डन में लोग घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे लोग आके बैठते --

कैनरा बैंक है इस बैंक में लोग आते हैं यह बैंक में पैसे निकासी करने के लिए बहुत सारे आदमी आते हैं यहाँ ए.टी.एम. से पैसे निकाले जाते हैं यह बैंक में बहुत सारी भीड़ लगी रहती है।

लोग बैट बॉल खरीदने के लिए आते हैं | यहाँ पे अच्छा बेट बॉल मिलता हैं सही दाम में मिलता हैं ।

इस मंदिर में बहुत सारे भीड़ होती है और सभी भक्तगण मंदिर आते हैं पूजा करते हैं |

यह एक नदी हे नदी में पुल बनाय गए हें पूल से बहोत सारी गाड़िया गुजरती हे यहाँ पे एक आदमी खड़ा हैऔर नदी में बहोत सारे पत्थर है पेड़ लगाए गए हें।

घोड़ा है यह दो घोड़ा है यह घोड़ा देखने में बहोत ही सुन्दर है घोड़े बहोत तेज दौड़ता है घोड़े पे हम लोग सामान लाते हैं यह घोड़ा --